इस फोटो में आप देखिए कि इसमे कई बच्चे जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं और एक इसमे एम्पयार भी है इस ग्राउंड में लोग क्रिकेट खेल रहे हैं पीछे आपको मकान भी दिख रहे है।